यहाँ पर टीन शेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्रश दिखाई दे रहा है जिसमें जी जीने बने हुए है टीन शेड दिखाई दे रहा है नीले कलर की टीन दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारे खम्बे दिखाई दे रहे है जिसमें बिजली के तार है दिखाई दे रहे है।

रेल्वे स्टेशन सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रेल दिखाई दे रही है रेल्बे के डब्बे दिखाई दे रहे है ऊपर तार दिखाई दे रहे है जो की बिजली के है।

यहाँ पर ए कुछ पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है जो हरे -भरे दिखाई दे रहे है हरे कलर के दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और सफेद कलर का है यह देखने में दिलकशीन लग रहा हैं।

झरने का सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहाड़ियों से नीचे पानी गिरते हुए दिखाई दे रहा है पानी का कलर सफेद दिखाई दे रहा है आजू-बाजू में कुछ पौधे लगे हुए है।

सामने टेबल लगी हुई है नीचे से स्टील की है ऊपर से लकड़ी की दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं नीचे फर्श है ऊपर पंखा लगा हुआ है।